एक पीले कलर की बिल्डिंग बनी हुई हैं।

डंडा रखा हुआ हैं एक पत्थर रखा हुआ हैं बहोत सारे पेड़-पोधे लगे हुए हैं।

डंडी लगी हुई है पीछे एक बहोत सारी जाली लगी हुई है पीली दीवाल बनी हुई है बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं ।

पीले और रेड कलर की पुती हुई हैं ।

एक पीले कलर की बस रखी हैं दो गाड़ियां रखी है बहोत बड़ा मैदान है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है जो ब्लू कलर की पुती हुई है इसमें बहुत सारी लाइट लगी हैं ।

बहुत सारे दरवाजे जैसे बने हैं पीले कलर कर पिंक कलर के--

एक बहोत बड़ा पत्थर रखा है बहोत सारी --

ज चढ़ाव बनी हुई है ब्लैक कलर की एक रेड कलर का ऊपर टावर लगा हुआ है।

इसमें एक ब्लैक कलर का चेनेल लगा हुआ हैं।

दो डस्टबिन रखे हुए हैं।

जो फ्लोवर से सजी हुई है।

मंदिर बना है वाइट कलर का पुता हुआ हैं।

यह एक बहुत बड़ी नदी हैं।

बहुत सारे लोग पर्चेस कर रहे हैं ।